इधर कुछ आदमी खड़े है लड़के खड़े है साइकिल के पास है दीवार बनी दीवार के ऊपर एक बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है सामने एक घर बना हुआ है।

यहां पर एक ही फिटनेट्स जिम सेलिब्रेशन लिखा हुआ है चार्ट के ऊपर और नीचे बहोत सारे --

ऊपर गहरा आसमान दिखाई दे रहा है।

हमारे यहां पर छोटे छोटे गमले पड़े हैं गमलों के ऊपर फूल लगे हुए हैं फूलों के ऊपर हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

औरत की म मूर्ति बनी हुई है पत्थर से औरत के एक सर पे और एक हाथ में पानी का घड़ा है।

यहां पर एक छोटी सी मूर्ति पड़ी है मूर्ति के ऊपर--

अं एक दीवार के ऊपर एक खिड़की लगी हुई है खिड़की के--

गीत लगी हुई है और सामने चार्ट बने हुए हैं यहां पर ऊपर पंख लगे हुए काले कलर के और घड़ी लगी हुई है गोल।

पीछे मोटरसाइकल गाड़ी हैं और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं यहाँ पर ये अमूल दूध का चार्ट बना हुआ हैं।

इस फोटो मे सामने रेल की पटरी दिखाई दे रही है पटरी के पास मे एक सड़क है सड़क के ऊपर सफेद कलर की एक गाड़ी बनी हुई है और यहां पर --

यहां पर चार लड़कियां हैं सबने सेम सेम कपड़े पहने हुए बालों में रीबन डाला हुआ है पीछे पर्दे लगे हुए --

सामने बेंच के ऊपर एक सॉस का डिब्बा पड़ा है पीछे कुछ ब्रेड है कुछ मिर्ची बड़े की है कुछ आदमी खड़े है सामने --

इस फोटो के अंदर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है पेड़ के नीचे ट्रैक्टर खड़ा है ट्रैक्टर के पीछे कल्टी है।